छोटे बच्चों के लिए भी गाड़िया हैं छोटे बच्चों के लिए भी शाइकिल है अ काफी सारी हैं।

रोड है। सुनसान रोड है जिसपे दूर से एक बाइक आ रही है खड़ी है आस पास व्हाइट पट्टी जा रही है। ब्लेैक रोड है।

ऐटीएम मशीन है जो ऑन है उसपे कुछ लिखा हुआ है पास में डस्टबिन रखी हुई है | जिस में कुछ कचरा है एक गेट है जिस पर ताला लगा हुआ है।